ये देखिए आपको सामने की तरफ स्वर्ग काल ज्वरलिस दिख रही है और बहुत अच्छा बाहर का डेकोरेशन भी किया गया है बहुत सारे फूल भी लग रहे है और कुछ बदक वाली डिजाइन भी डली है।